तस्वीर मे ऐ.टी.म. भी दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल की चित्र है जिसका नाम हो सकता है और हम हमारे सामने देख पा रहे है की यहाँ पर बॉक्स ऑफिस है इसका मतलब है की यहाँ पर सिनेमा घर होगा।

अपना काम कर रा है।

यह चित्र एक जिम का है। इस चित्र में हम देख सकते है कि ये आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और --

बहुत सारी चित्र दिखाई दे रही है जो की हेयर के - हेयर सलून के बारे में है।

इस मंदिर का गेट बोहोत बारिकी से तराशा गया है। ये बहोत सुंदर दिख रहा है।

यह तस्वीर एक वाटर पार्क की है| यह तस्वीर में हम देख सकते है कि बहुत सारी घसरगुंदिया लगी है।

ये चित्र में हम देख सकते है कि यह एक बैंक की तस्वीर है। इस बैंक का नाम विजया बैंक है और यह मुजफ्फरनगर में स्थित है। यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग ब्रांच है।

और उनके ऊपर एक टी.वी. लगी हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोग अपने बाल या अन्य कामे कटवाने के लिए आते हैं।

यहाँ पे हमें पेड़ खिलौने और बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है जिससे की --

यह एक बैंक की तस्वीर है। यह एक पंजाब नेशनल बैंक जो यहा उपस्थित है।

यह तस्वीर में हमें एक बुक स्टोर की अ तस्वीर है जिसका नाम आयुष बुक स्टोर है जो की डी. ए. वी. कॉलेज मार्केट आर्य समाज रोड मुज्जफर नगर यू. पी. यहाँ पर उपस्थित है।

बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध रहतीं हैं यहाँ बहुत सारी बोर्ड्स की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

यह तस्वीर एक नदी की दिखाई दे रही है यह नदी पे एक बहुत बड़ा पुल बंधा हुआ दिखाई दे रहा है।